हेलो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी घर है यह काफी अच्छी डिजाइन से बनी हुई है और--

हेलो फ्रेंड यहां एक लड़का पीछे मे लड़के भी खड़े हुए हैं। लगता है कहीं पार्टी वारटी है। पार्टी हो रहा था। मस्त दिख रहा हॉल लाइट वाईट लगी हुई है। सभी याची है।

ये शेर का मूर्ति है। शेर का मूर्ति है और यह बहोत ही बड़ा फार्म बना है।

बिना सपोर्टिंग का है ऐसा लग रहा है देखने योग्य तो है पर देखने आइएगा इतना अच्छा नजारा कहीं नहीं मिलेगा लगता है।